कुछ जलने का कुछ दिखाई दे रहा है लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

बहोत औरत भी दिखाई दे रहे हैं सजावट भी किया गया है।

सामने मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है मंदिर सजावट किया गया है।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जो कपड़ा पहना हुआ है।

रूम वाइट कलर से पेंट किया गया है कूलर भी दिखाई दे रहे हैं स्विच भी दिखाई दे रहे--

बगल में बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे--

लाइन का तार भी दिखाई दे रहा है घर भी दिखाई दे रहा--

बहोत सारे आकाश भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियां भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ मिठाई का पैकेट भी दिखाई दे रहा है।

जो एक सड़क दिखाई दे रहा है उसके बगल में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

झंडे भी गाढ़े हुए हैं आकाश भी दिखाई दे रहे हैं।

एक रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

रूम व्हाइट कलर का पेंट किया गया है बहुत सारे कार्टून भी दिखाई दे रहे हैं।

वालटिन भी रखा हुआ है टेबल भी रखा हुआ है।

टाइल्स भी लगे हुए हैं बहुत सारे क्रीम भी दिखाई दे रहे हैं साबुन भी रखा हुआ--

पंडित भी दिखाई दे रहे हैं आकाश भी दिखाई दे रहे हैं।

सूटकेस भी दिखाई दे रहे हैं और लोग बगल में खड़े हैं।

कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं आकाश भी दिखाई दे रहे हैं घास भी दिखाई दे रहे हैं।

उस पे बहुत लोग खड़े हैं लाइट भी लगाए हुए हैं।

गेट भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

खम्भा भी लगाए हुए है टाइल्स भी लगा हुआ है।

बॉक्स लगाए हुए हैं स्कूटरी भी दिखाई दे रहे हैं।